कोचिंग सेंटर है एक किराना दुकान भी दिख रहे हैं।

और बहोत सारे बुक भी दिख रहे हैं एक पंख लगा हुआ है।

इसमें दो तीन आदमी दिख रहे हैं खिड़की हैं।

एक मुर्गी फारम दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारे टरक दिख रहे हैं।